और आगे खाली मैदान पड़ा हुआ है। यहाँ हलके-फुल्के घांस दिख रही हैं।

सितार वादन वगेरा बै रखे हुए हैं।

टंगी हुई हैं पैकेटों में।